इस चित्र में हम देख सकते हैं कि--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

हमें यह दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें आ रहा--

ये एक किला हैं और उसके पास में--

ये एक बेकरी की शॉप है।